ये एक मैदान है इसको देखकर लग रहा है जैसे ये किसी इस्कूल का मैदान है।

नीचे एक गुलदस्ते में फूल भी हैं।

हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे लोग आस पास खड़े हैं।

नजर आ रही है और--

और बलून भी तिरंगे रंग के लगे हुए हैं।

और बहोत से घर भी है और तो और पीछे बड़ा सा नीला आसमान भी दिख रहा है।